पास है मुझे कोल्ड ड्रिंक वाली बड़ी फ्रिज दिखाई दे रही है कुछ लाइटें दिखाई दे रही है।

सीसे लगे हुए बारिया दिखाई दे रही है कुछ बारी लगी बाहरी दिखाई दे रही है पोस्टर भी दिखाई दे रहे है।

इस फोटो के अंदर मुझे सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके गेट है वो --

एक जे_सी_बी एल_एन_टी दिखाई दे रही है जो खड्डा करा रहे हैं उसे--

इस फोटो के अंदर मुझे कोई रेलवे स्टेशन लग रहा है इसके अंदर मुझे --